ये एक फलों की दुकान है।

प्लेट में रंग बिरंगी डिश डाली--

ये सामने एक दुकान है जिसमें एक डमी है।

सारा समान रखा हुआ है और--